एण्ड बहुत सारे पोल लगे हुए है करंट के जिसमे ट्रैन का करंट पास होता हैं।

बहोत सारे गाछ वृक्ष अगल बगल इन हरे हरे गाछ वृक्ष है ऊपर की ओर पहाड़ है जिसमें ऊपर से पानी आ रहा है नीचे की ओर नीचे जमा हो रही हैं पानी --

ये गाछ है एंड स राइट साइड में भी गाछ है बोहोत सारे जंगल है इलाका है छोटे - छोटे प पत्ते --

रेड स्लाइडर है आगे की ओर पानी है बहुत सारे पेड़-पौधे है लेफ्ट साइड में भी ठहरने की जगह है बैठने का--

ये बोहत सारे बच्चे स्कूल के हैं जो योगा क्लास में बैठे हुए है बोहत बड़ा चटाई है जो--